साइड में से सीढ़ी बनी हुई है एक गैस सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

सामने एक मशीन खड़ी हुई है जो की गोल चकरी के सामान है उसमे तार लगे हुए है जाली की डिजाइन से--

आसपास में पेड़- पौधे और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है साथ ही रोड पे दो- तीन गड्ढे में पानी भरा हुआ भी दिखाई दे रहा हैं।

साथ में आसपास में बहुत से लोग इसको देखते हुए नज़र आ रहे है साथ ही इसका आनंद लेते हुए मजे से इस कुंए के साइड में खड़े हुए है।

साथ मे आस पास मे हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है और आसमान खुला दिखाई दे रहा है जिसका कलर नीला दिखाई दे रहा है झरना से पानी भी बहता हुआ है।

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर एक ओर सीलिंग भी बनी हुई है आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।